मुझे इस फोटो पर मिट्टी का मैदान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर--

मुझे इस फोटो पर कप की दुकाने दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो पर बदल दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर दुकान दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर सैल दिखाई दे रहे हैं।

गोल्ड कलर की टेबल दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर लाल कलर की --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

एक लाइन से जमी हुई टेबल नजर आ रही है।

कुछ बुक्स नजर आ रहैं हैं।

लोग भी दिखाई दे रहे हैं।